पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पोल्स दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में हमें एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक नदी दिखाई दे रही है पत्थर दिखाई दे रहे हैं एक पोर्च दिखाई दे रहा है।

एक बॉय बीच में फ्लैग लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। टेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक लॉन्ड्री दिखाई दे रही है।

और कपड़े दिखाई दे रहे हैं रेक दिखाई दे रही है व घडी दिखाई दे रही है।

लाइट पिंक कलर के दिख रहे हैं। एक व्हाइट वॉल दिखाई दे रही है। पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पानी दिखाई दे रहा है। घास दिखाई दे रही है।

और विंडोस दिखाइ दे रही है।

बैटमिन्टन दिखाई दे रहा है और नेट दिखाई दे रहा है।

एक कार दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। पाइप दिखाई दे रहा है। डॉग्स दिखाई दे रहे हैं।

बाउंड्रीज दिखाई दे रही है। पिलर्स दिखाई दे रहे हैं और मिट्टी दिखाई दे रही है। पानी दिखाई दे रहे हैं।